सड़क है सड़क पे बहोत अच्छी सड़क दिख रही है और यहां पेट्रोल पंप देख रहा है बहोत अच्छा लग रहा है देखने बहुत अच्छा है।

सी_सी_टी_वी कैमरा लगे हुए है यहां पे।

ब्लैक रंग के कपड़े दिख रहे हैं सामने रेड रंग के दिख रहे हैं।

ये वो एक झूला है इसमें एक साइड इसमें बच्चे बैठे हैं।

अ यहां चेयर स्कूल सब दिख रहा है पर्क आगे पार्क है।

और यहां पे एक पीछे घर भी है और यहां पे--

इसके जो बनाने का वो है डो रस्सा है वो--

या नमकीन बिस्कुट चॉकलेट है वगैरा वगैरा ई_टी_सी कुछ भी ले उसको देख रहे हैं आपको ये यहां पे--

यहां बेक स सेक नहीं बनाना सेक भी मिलता है।

उम्म मतलब बहुत अच्छा लगा रहा है हरी भरी घास सी है।

यहां पे एक बीच में दरवाजा भी लगा हुआ है बाइक भी खड़ी हुई है।

एक्टिवा खड़ी हुई है यहां पे मशीन मोटरों की मशीन है कूलर है कुर्सी है।

ये यहां पे एक आदमी और एक लुगाई बैठी है यहां पे बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

बहोत सारे लोग की चेयर रखी हुई है।

ये आदमी और लुगाई आदमी ने सफेद और लुगाई ने नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है।

यहां एक गेट्स पैड़ी भी लगी हुई यहां पे चारों तरफ--

एक आदमी बल्ला पकड़ रहा है एक अंपायर खड़ा है।

और यहां पे सारी लाग रहे हैं देखने में बहुत अच्छा लग रया है यहां में येलो --

और यहां पीछे भी बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लाग रहे हैं हर जगह पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं खंबे से भी हैं यहां पे।

नया सूट भी लगे हुए हैं साड़ियां लगी हुई है बहुत अच्छा लग रहा है।